इस फोटो में मुझे मोबाइल की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे लाइट दिखाई--

इस फोटो में मुझे टायर दिखाई--

इस फोटो में मुझे मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे दुकानें दिखाई दे रही--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

इस फोटो में मुझे क्लिनिक दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे रोड दिखाइ दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बाइक और साइकले दिखाई दे रही है।